साथी वहाँ मेन गेट पर काफी सारी और गाड़ियाँ भी रखी गई हैं।

बस का रंग पीला लग रहा है और पीछे की जमीन खाली लग रही है।

अह पीछे एक हरे रंग का पर्दा भी लगा हुआ है और पीले रंग के काफी सारे फूल भी हैं।

यहां पर एक लड़का जिम कर रहा है और पीछे काफी सारी मशीने लगी हुई है।

बगल मे एक पौधा भी रखा हुआ है।

पुराना किला लग रहा है जैसे कि यहां सामने एक बहुत बड़ा खंभा भी है।

जार भी रखा हुआ है और सीढ़ियां भी लगी है।

और नीले रंग का सोफा सेट भी लगा हुआ है।

यहां पर एक सर्विस सेंटर है जहां दो लोग खड़े हुए हैं।

साथ मे यहां चार पांच लोग भी बैठे हुए हैं।

आसमान बिल्कुल खाली लग रहा है देखने में ये काफी सुंदर घर लग रहा है।

यहाँ पर काफी रकम रकम की मछलियाँ बिक रहीं हैं।

ये काफी अच्छी दुकान लग रही है।

यहां पर कटनी मुरवारा स्टेशन है।

यहां पर एक ग्राउंड लग रहा है किनारे काफी कमरे बनाए गए हैं और ऊपर--

और रॉड लगाई गई है लेंटर लग रहा है और लकड़ी भी है।

ये एक किराना स्टोर है जहां पर--

और बगल में भी एक सफेद रंग की बिल्डिंग है।

और वहां पर भी काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और पिलर है।

और सामने एक कुआं बना हुआ है।